जीनपे एक महिला बैठी हुई है और एक महिला खड़ी है।

इस तस्वीर में मुझे फील्ड के बगल में बहोत सारे पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं और पेड़-पौधों के और इस फील्ड के बगल में जो है मुझे बहोत सारे घर मकान --

इस तस्वीर में मुझे दिन का दृश्य दिखाई दे रहा है और इस तस्वीर में मुझे एक प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है।

इस दुकान के आस पास भी कई सारी दुकाने नजर आ रही है एक लाल रंग की कुर्सी भी नजर आ रही है।

पेड़ पौधे हरे दिखाई पड़ रहे है रास्ते में बीच में लाइन बनी हुई है।